ये गेट है और गेट के ऊपर में लिखा हुआ है ई.सी.जी. नमोला उज्जैन।

ये है ये मूर्ति है। मूर्ति पत्थर का है और इसके ऊपर चुनरी ओढ़ाया गया है।

ये स्कूल है। ओकर स्कूल में लिखाया --

और लोहा बहुत है जिम करने वाला सामान --

ऊपर में त्रिशूल नया लगाया गया है। इसके बगल में लाइट लगाया गया है बहुत ऊंचा मंदिर के ऊँचा तक।